मछली है बड़ी बड़ी और बहुत सरे आदमी है डिब्बा में मछली राखी गई थी मछली हाथ में पकड़े हए है आदमी बड़े लगे हुए है।